ये एक घर बना हुआ है जो घर पूरे खपड़े का बना हुआ है।

हां इस में तस्वीर में आप जैसे कि दिख रहा है।

आदमी है वो बहोत बड़ी चट्टान पे बैठके नजारों का व्यू ले रहा है।

दूल्हा देखा जा सकता है की वह वो शादी से पहले भगवान से आशीर्वाद लेने गया है।

ये खाने की सामने की सामग्री जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर मेनू कार्ड लगाया गया है कि यहां क्या क्या मिलेगा?

में की आप देख सकते हैं। यहां एक जो है कि गणेश जी की आकृति लगी --

जिसमें कि देखा जा सकता है की बारिश के दिनों में जब ये झरने बहते हैं तो काफी खूबसूरत ते हैं स् --

ये वो दुकान है वो केक की दुकान है और --

जिसमें यह बिल्डिंगे है यह मेरे हिसाब से सरस्वती स्कूल के आगे --

अ लेफ्ट तरफ लाल कलर का फर्श उस पर सॉस की दो बॉटले रखी गई है और अब पीछे और देख सकते हैं कि एक कैबिन है।

और एक ओर जो है की कूलर बिक रहा है ए_सी भी लगी हुई है और यहां आप देख सकते है की दो आदमी आपस में बात कर रहे है।

पूजा पाठ कब से होती आ रही है और ये जो मंदिर का कलर है वो पीले कलर का है सुंदर उम्म लग --

इसमें की है कोयला मंडी की फोटो है।

जिसमें की कोयला का काम चल रहा है और लोडिंग का काम चल रहा है जिसमें एक गाड़ी भी है जो ग्रीन कलर की है।

वजह से झरना एक बैह आया है और लड़का उस झरने का लुप्त उठा रहा है उस सिनेरियो --

और उसके पीछे देखेंगे की माता सरस्वती की एक अच्छी बहोत सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है।

यहां पे अलग अलग चिप्स वगैरा के लिए कई सारी वेफरों के लिए कई सारी दुकाने लगाई गई --

दिखाया जा रहा है कि एक जो की दुकान बनी हुई है।

जिसमें की होता है कि अलग-अलग तरीके से जो है कि पानी गिरता है और बहुत ही अच्छा कुर्ती बनता है।

दिखने के कई सारे लोग जुटे हुए हैं जिसमें कई सारे महिलाएं कई सारे पुरुष कई सारे बच्चे --

इसमें कि कई ब्लैक गाड़ी है कोई व्हाइट गाड़ी हैं कोई रेड गाड़ी हैं।